इस जंगल पर बड़े बड़े पत्थर बिछे हुए हैं जिस पर एक आदमी खड़ा हुआ है।

यह ए_टी_एम स्टेट बैंक का ए_टी_एम है।

इस ए_टी_एम के बाहर बहोत सारे लोगों की भीड़ जमा है तथा बाहर एक गाड़ी--

इस मस्जिद के नीचे चार दुकानें भी मौजू --

तथा जयमालों के नीचे कमल के फूल भी रखे--

मुझे इस फोटो पर एक छोटा सा ब्रिज --

डेकोरेशन का सामान बनाते हुए नजर आ रहे हैं।

इस शॉप का नाम मारुति हार्डवेयर एंड ट्रेड्स है यह दुकान पीले रंग की है।

इसमें गेट और खिड़कियां लकड़ी की बनी हुई नजर आ रही है।

बहोत बड़े से मार्केट भी नजर आ रही है।

तथा एक बाजू में कंपलेक्स भी नजर में आ रहा हैं।

यह ऑफिस डेवलपमेंट ऑफिसर का है।

मुझे इस फोटो पर एक दुकान नजर--